यह तस्वीर लेकिन लाइब्रेरी की है।

यह तस्वीर एक मस्जिद की है।

और टेबल भी टेबल पे प्लेट रखी गई है।

खिड़की के बाहर सि ई उम्म --

रोड पे कुछ गाड़ियां चल रही है।

कुछ बैठने वाली जगह भी बनाए गए हैं जहां पे लोग बैठे हुए हैं।

जो कि सर्फ़ एक्सेल की प्रचार कर रहे हैं।

बच्चों के पीछे एक दुकान दिख रहा है।

क्योंकि शाम की समय की फोटो ली गई है।

बहुत सारी टीशर्ट रखी हुई है रखी गई है।

यहां पे एक टेबल भी है जिस पर बहुत सारे--

इसमें एक धियो अ इस रूम में एक छिमकिल--

एक कार है एक दो बहुत सारी ओटो रखी हुई है।

एक रूम की दिख रही है जिसमें एक बेड लगाया गया है।

एक किचन दिख रही है जिसमें चूल्हा दिख रहा है गैस दिख रहा है।

बहोत सारी कार दिख रहे है एक ऑटो दिख रहा है।

जहां पे बजाने वाले बहुत सारे गिटारे रखी हुए हैं।

ये तस्वीर बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है कलर कलर की गिटारें रखी हुई हैं।

बहुत सारे मछलियां रखी हुई है।

मछली वाले के बगल में तराजू रखा हुआ है।

जहां पे एक भी गाड़ियां नहीं दिख रही है।

एक बाइक है जो कि बहुत दूर पे खड़ी है।

एक व्यक्ति काउंटर पे एंट्री कर रहा है।

बुक दुकान से ख की ली गई है।

जिसमें आराम से बैठ सके।

यह तस्वीर किसी पार्क से ली गई है।

जहां पे बहुत अच्छी तरह से रास्ते की--

ये पार्क ब्ल बिल्कुल तरह से साफ दिख रही है।

ब्लैक हुडी और ब्लैक जूता पहने हुए है वाइट जींस पहने हुए है।

एक बड़ी पोस्ट ऑफिस के बैनर लगे हुए हैं।

ये यहां लाइटें बहुत अच्छी तरह से--

कंपनी की दिख रही है जो कि--

जो कि बहुत अच्छी तरह से डिजाइन किया हुआ है।

सामने एक दुकान प्लास्टिक से घिरा हुआ दिख रहा है।

यह तस्वीर बहुत ही बेहतरीन दिख रही है।

जो कि बहुत ही अच्छी तरह से डेकोरेट किया गया है।

चेयरे बहुत ही अच्छी तरह से लगाई गई है।

एक बिल्डिंग दिख रही है जो कि ब्लू कलर की है।

कुछ घर दिख रहे हैं जो कि करकट के हैं।

यह तस्वीर एक पहाड़ की गुफा की नजर आ रही है।

एक कुरादान दिख रहा है जो कि पीले कलर का है।

जिसमें बहुत सारे पेर लगे हुए हैं।

कुछ बिजली के खंभे नजर आ रहे हैं।

यह तस्वीर बहुत ही बेहतरीन दिख रही है।

बहुत सारी लोगी छोटी-छोटी बनाई हुई दिख रहे हैं।

बाइकेें लगी हुई हैं कुछ लोग --

तेल डलवाते हुए नजर आ रहे हैं एक बहुत बड़ी टैंक दिख रही है।

पेट्रोल पंप के ऊपर एक झंडे लगाए गए हैं।

ये तस्वीर ये एक घर दिख रही है।

यह तस्वीर एस_बी_आई बैंक की है।

भीर लगाए हुए हैं एक लेडी --

साइकिलें भी हैं जिसके पीछे बैग बांधे हुए हैं।

यह तस्वीर बहुत ही बेहतरीन दिख रही है जिसमें बहुत ही--

दुकान के नीचे बहुत सारे लोग खड़े हैं।

एक बाजा दिख रही है जो कि बहुत ही बेहतरीन है।

एक पॉल दिख रहा है जिसमें बहुत सारी तार--

यह तस्वीर एक सब्जी बाजार की नजर आ रही है।

मिर्चा देख रहे हैं नींबू देख रहे हैं।

पीछे कुछ डंबल रखे हुए हैं जो कि बहुत ही बेहतरीन हैं।

ये तस्वीर बहुत ही बेहतरीन दिख रही है।

यह तस्वीर किसी बाहरी इलाके की है।

जो कि बहुत ही अच्छी दिख रही है।

जो कि बहोत ही खूबसूरत दिख रहा है रोड बहोत ही क्लीन है।

जहां पे गिटार रखे हुए हैं।

यह पौर्दा यहां के पर्दा बहुत ही अच्छी दिख रही है।

यह तस्वीर बहुत ही खूबसूरत है।

कुछ लड़कियां भी योगा करते हुए नजर आ रहे हैं।

यह तस्वीर एक जिम क्लास की लग रही है।

सामग्री रखे हुए हैं और यह जिम क्लास बहुत ही बड़ा दिख रहा है।

कुछ लोग मूर्ति देखने के लिए आए हुए हैं।

जहां पे एक व्यक्ति टेबल पर कुछ पेपर निकालते हुए नजर आ रहा है।

यहां तस्वीर किसी रेस्टोरेंट से ली गई है जो कि बहुत ही अच्छी तरह से डिजाइन किए गए हैं।

टेबल और बेंचे रखे हुए हैं दो खिड़कियां हैं।

यह तस्वीर किसी बिल्डिंग को बनाते हुए--

एक व्यक्ति कुछ एक व्यक्ति--

बेहतरीन तरीके से लाइट लगाई गई है।

एक घर दिख रहे हैं जिसके अंदर एक कार है।

कुछ पौधे दिख रहे हैं।

कुछ व्यक्ति बाइक से भी जाते हुए नजर आ रहे हैं।

जो कि बहुत सारे बच्चे कलर कलर के कपड़े पहने हुए हैं.

एक बैलून से गेट बनाए हुए दिख रहे है बहुत सारी बैलून लगाए हुए हैं बहुत --

जो कि योगा करते हुए बहुत सारे लोग दिख रहे हैं।

जहां पर बहुत सारी प्रकार के कपड़े रखे हुए हैं।

जो कि बहुत सारी पुल की पिलरें गड़ी हुई है।

बैलून से सजा हैं कुछ मशीनें बैलून से सजाए हुए दिख रहे हैं।

एक टेबल दिख रही है कुर्सी दिख रही है।

कुछ बाइके गेट पे लगी हुई दिख रही है।

जो कि इसका बैनर बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है।

यह तस्वीर रात की ली गई है।

कुछ सामान लेते हुए नजर आ रहे हैं कुछ व्यक्ति रोड से जाते हुए नजर आ रहे हैं।

जिसमें बहुत सारी बुलेटें रखी गई है।

और यह सलून बहुत ही बड़ा दिख रहा है।

ये रेस्टोरेंट बहुत ही बेहतरीन तरीके से सजाई गई है बहुत बड़ी रेस्टोरेंट है।

यह तस्वीर किसी नदी से ली गई है।